यहाँ पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहें हैं पेड़-पेड़ दिखाई दे रहें हैं तालाब के किनारे एक दीवार दिखाई दे रही है।

यहाँ पर दीवाल पर दो सींग बने हुए है एक तस्वीर छपी हुई है जो दिखाई दे रही है कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है जो--

यहाँ पर एक गुफा दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक व्यक्ति जा रहा है ये यह चट्टानें कुछ वो बहुत पुरानी लगरही है ।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

यहाँ पर एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे मे टी.वी . लगी हुई है कुछ बुके रखे हुए है टेबल पर और एक लैपटॉप रखा हुआ है जो दिखाई दे रहा है व्यक्ति बैठे हुए है जो दिखाई दे रहे है एक व्यक्ति दीवाल पर--

यहां पर एक लड़की दिखाई दे रही है जो की निरत कर रही है ।

यहाँ पर पानी का टेंक दिखाई दे रहा है जो रखा हुआ है यहाँ पर कुछ बर्तन रखे हुये है जो दिखाई दे रहे है कुछ महिलाये दिखाई दे रही है जो कि सबजि काट रही हैं।

वे बाजू मे वह दिखाई दे रही हैं।